पारले हैं | त्रेसठ नंबर पर --

ऐसे अन्य सामान हैं।

हर एक सुविधा है यहाँ पर। टाइल भी लगी हुई है। यहां बोहोत अच्छी-अच्छी क्रीमे भी रखी हुई हैं। फिनिशिंग हो रही है।

बहुत सुन्दर खेल है यहाँ चिड़िया बल्ला खेल रहे है लाइटे लगी हुई है फील्ड अच्छा बनाया हुआ है।

अ अलग-अलग वो लिख टेबले हैं यहाँ पर अपनी ड्यूटी करते हैं जॉब वाले सरकारी अच्छी यहाँ पर आमदनी है इनकी।

इसके बगल में बहुत ही बड़ी बिल्डिंग एक मंदिर जैसा बना हुआ है। बहुत सुन्दर लग रहा है यहाँ पर देखने के लिए --